सीढ़ी वीढ़ी हावे एकदम से मस्त बड़े-बड़े ब्लैक बोर्ड हे अऊ का का हे बड़े-बड़े घर हे इंग्लिश हि हिंदी म लिखाय हे मस्त दिखत हे अ एकदम कर्सिव राइटिंग म लिखे हवें।

मस्तक चट्टान मैया ये जी भैया हावे पत्थर वथर के घर सन दिखथे अउ इंग्लिश विगलिंश में लिखाये हाबे मस्त--